ये जो दिख रही कोई बस हैं बस में कुछ इतना हरा-भरा जो दिख रहा बहोत सारी-सीट हरी-भरी दिख रही हैं वहाँ पर वो जो वाइट कलर में दिख रहा हैं बस उतनी बस उतनी सुंदर लग रही हैं।

लगे दिखाई दे रे बबून रंग-बिरंगा का पेंट का पोस्टर भी दिखाई दे रहा हैं हा व फुब्बारे भी वाइट कलर के लाल कलर के दिख रहे हैं।

मुझे एए कुछ ऐसे लग रहा है जैसे कोई पानी में सब्रेन व् गु-गु-जिससे पानी बहार निकल जा बूट उस चीज का समज में आ रहा वहाँ पर बहोत सारीईई बाइक रखी बहोत सारी साइकिल भी रखी बहार सब--